देखने को मिल गए है जैसा लग रहा कोई एक बाजार है।

जो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया लिखे हुए है नोटिस बोर्ड पे--

देखने के लिए मिल रही यहाँ पे--

ये पार्क के दाँए साइड हरे-भरे--

और फोटो को क्लिक किए हैं आसमान के कलर भी फीके-फीके लग रहे हैं बारिश होने की सम्भावना हैं।

ये वो देखने को मिल रहे गराग लोग पेड़ भी देखने को मिल रहे दूकान के--

देखने को मिल रहे हैं।

पेड़-पौधे देखने को मिल रहे है जो बेहद ही खूबसूरत नजारा--

जो बेहत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रही सड़क की --

बहोत तरह-तरह के सामान रखे गए है।